टब में मछली रखी हैं जो सादा और काला कलर का है छोटी बड़ी दोनों मछली मिक्स हैं नीचे--

जैसे कि मैं देख पा रही हूँ ये एस.बी.आई. बैंक है स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया और ये --

जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक परंपरिक तरीके से पूजा हो रहे हैं जिसमें बहुत सारी महिलाएं रीति रिवाज से--

सलून में बैठे है और अच्छी तरह से इसके हेयर की कटिंग हुई है जो काफी यूनीक लग रही है।

जो पीला रंग का अ अ पैंट किया हुआ है और स्काई कलर का अपर बार्डर दिया हुआ है और यह टाइल्स पूरी ही टाइल्स --

मार्वल का है काफी नीट एण्ड क्लीन और बहुत ही अच्छे दिखने में लग रहे हैं ये--

काफी अच्‍छा है और काफी ठंड और साफ-सुथरा पानी देखने में लग रहा है ।

ये मंदिर अच्छे से पूजी विधि-विधान से पूजा की गई है।

ये बहुत सारे पड़ाके फोड़े जा रहे हैं बच्चे लोग फोड़ रहे हैं लाइटें जल रही है आतिशबाज हो रही है एक अ --

और पेड़ पौधे में जो पानी डाला जाता हैं वो एक --

ऐलमूनियम का है ग्रीन है जो प्लास्टिक फाइबर का है बोहोत--

और यह काफी भीड़ लगी हुई है बाहर इंतजार कर रहे हैं ब--

बीच में एक ट टापू बना हुआ है एक ग्रीन उसके ऊपर पहाड़ की तरह उठी हुई है बहुत ही अच्छा दिख रहा है--

जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कपड़े का दुकान है कपड़े का गद्दी है गोल्डन रंग का पाइप लगा --